उसके ऊपर ब्लू कलर का चार्ट रखा हुआ है।

एक बड़ा सा कैक्टस का पेड़ भी दीख रहा है।

एक सोफे वाली कुर्सी भी रखी हुई है।

जिसमें बहोत सारी अलग-अलग स्लाइड्स भी दिख रही हैं कुछ लोग पानी में नहा रहे हैं।

बाहर व्हाइट कलर की लाइट भी जल रही है।

जिसमें बहोत सारे पेड़ दिख रहे हैं।

और एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है।

और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।